और वहाँ पर विद्यालय मे जाने के लिए एक रास्ता भी बनी हुई दिखाई दे रही है और वहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति दिखाई दे रहे है और गड़िया भी रखी हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर हमे एक स्वीमिंग पूल बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत ज्यादा पानी भरा हुआ है और पानी नीले कलर का भरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें एक व्यक्ति नहा रहा है।

यहाँ पर हमे एक बहुत सुन्दर गार्डन बना हुआ दिखाई दे रहा है जो कि दिखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर कुर्सिया बहुत सारी रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ से बनी हुई दिखाई दे रही है।